जहां पर हमें एक बहोत ही बड़े सिलेंडर रखे हुए नजर आ रहे हैं।

इस ए_टी_एम के बाहर हमें कुछ आदमी खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

जिस स्कूल के आगे एक छोटी सी पार्क --

एक बहुत ही सुंदर पार्क दिखाई दे रहा है।

एक सब्जी की मार्केट दिखाई दे रही है यहां पर लोग अपनी अपनी सब्जियां बेचने के लिए--

इस बैकरी के बाहर हमें कुछ--

यहां पर हमें बहुत सारी बोरियां कनक की--